जैसे कि आप देख रहे हैं। यह बिल्डिंग एक पुराने कार्यालय की तरह दिख रही है। जिसमें कर्मचारी सरकारी कर्मचारी काम करते हैं।

जिसमे कन्याएं पड़ती है। इसमें बॉय्ज़ अलाउड नहीं होते हैं।

जिसमें बेड रखा हुआ है पीलो रखे हैं सोफा रखा हुआ है और टेबल लगी हुई है| नाइट लैम्प जल रहा है।

यह किसी जंगल का फ़ोटो दिख रहा है आपको| जिसमें बहोत ऊंचे-ऊंचे पेड़ बहोत सारे घने जंगल हैं| जिसमें --

जानवर भी रहते हैं और बहोत ही अच्छा दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर घूमने के पर्पस से आते हैं।

बड़ा ही सुंदर नजारा दिख रहा है।

यह एक गर्ल आपको जो सामने दिखाई दे रही है। वह किसी काम्पिटिशन इग्ज़ैम में उसने पार्टिसपैट किया है।

यह तीन लेडिस जो शो हो रही हैं आपके सामने वह किसी प्रोग्राम मे नृत्य प्रस्तुत कर रही हैं।

बोहोत सारे बलूनस लगाकर कितते अच्छे-से सजावट की गई है और हैप्पी बर्थडे का भी बैनर लगा हुआ है।

यह एक सुपर बाजार का फोटो दिख रहा है आपको। इस फोटो में --

यहाँ आपका रेल्वे स्टेशन दिख रहा है जिसमें दो ट्रैक नजर आ रहे हैं ट्रेनों के प्लेटफार्म नजर आ रहा है।

यह आपके सामने जोश शॉप दिख रही है यह शॉप फ्लावर शॉप है।

ऐसा नहीं करना चाहिए जितना खाना आवश्यकता है उतना ही खाने की जरूरत होनी चाहिए।